दिखाई दे रही है एक हेडपंप --

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे--

यहां घर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ दिखाई--

एक रोड दिखाई दे रहे--

तेल है है शटर दिखाई दे रहे है।

मुझे इस इमेज में एक पार्किंग एरिया दिखाई--

दे रही है। बहोत सारे पुरुष दिख रहे--

दे रहे हैं एक कार --

दे रही है एक पुरुष दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस इमेज में मशीनें दिखाई--